उपर सब पर्दा लगा हुआ है उसमें आदमी जाते हुए दिख रहा है।

इसमें पर्दा है। गेट है। कैमारी है।

इसमें योगा करते हुए दिखाया गया है।

जिम बिलकुल ही साफ़ है।

यह एक जिम की तस्वीर है।

यहाँ पर एक आगे में भी लोग खड़े हुए हैं आगे में रेड कलर की चेयर लगी हुई हैं जो कि ऐ.सी. सैलून है।